दिए गए तस्वीर में मुझे बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर अंधेरा और पेड़ दिखाई दे रही है।

और मुझे यहां पर टी_वी का एंटीना भी दिखाई दे रहा है।

वहां मुझे कमरे में काला रंग का बड़ा सा चेयर दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बाइक दिखाई दे रहा है स्कूटी दिखाई दे रहा है और मुझे यहां पर ऑटो भी दिख रहा है।

और ऊपर में मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां घरों के सामने बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे चार लोग दिखाई दे रही है जो अपना अपना बैग भुगते हुए जा रहे हैं।

बाहर में मुझे जीप खड़ा हुआ दिख रहा है और छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स भी रखे हुए हैं।

कमरे का कलर ग्रीन कलर का मुझे दिख रहा है।

इस पिक्चर पर मुझे बस दिखाई दे रहा है यहां बस का जो सीट है मुझे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिनमें मुझे बहुत सारे आदमी चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ मुझे लाइट बल्ब भी दिख रहा है।

मुझे यहां पर स्कूटी दिखाई दे रहा है।